ये एक एरिया है पार्टी का हॉल है और फूलों से और बैलून से सजा हुआ है।

काउंटर में एक रेड कलर का शर्ट पहन के बैठे हुए हैं और दो लोग लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं।

यहाँ बहुत सारी मिठाइयां नमकीन सब मिलते हैं।

सामने में बहुत सारे फैंटा वगैरह लगी हुई हैं चिप्स लगी हुई हैं बिस्किट्स लगी हुई है।

और आदमी खड़े हो के कुछ कर रहे हैं नीचे एक जन बैठ के कुछ कर रहे हैं ड्राइवर अंदर घुस रहा है चलाने के लिए।

दिया हुआ है और बिल्डिंग के पास यहां नई बिल्डिंग बन रही है और--

और यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं एक ट्रैक्टर सामने से जा रहा है।

सामने एक चार लोग खड़े हुए हैं।

साइड में सर्विस के लिए एक रास्ता दिया हुआ है वहां से भी लोग आना जाना कर रहे हैं।

यह स्कूल है स्कूल में सब कोई बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं।

सामने में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं इधर एक आदमी मोबाइल चला रहा है उधर एक आदमी मोबाइल चला रहा है।

चारों साइड पेड़ों से घिरा हुआ है साइड में एक मोटरसाइकिल है वहाँ दो-तीन आदमी खड़े हुए हैं सेल्फी खींच रहे हैं।